कुछ मिट्टी दिख रही है पत्थर दिख रहे --

कुछ इलेक्ट्रिसिटी वायर दिख रही ना पीछे आसमान दिख रहा है।

एकठो एक्सिस बैंक का ए.टी.एम. में दिख रहें हैं।

बहुत सारे गाड़ी दिख रहे हैं एक गाड़ी का शोरूम दिख रही हैं जिसमे बहुत सारे लाइट जल रही हैं।

जंगल में से रास्ते दिख रहे हें जाने --

बिल्डिंग जैसा स्ट्रक्चर दिख रही --

टुटो पतलो कोबी दिखईबा गाजर दिखईबा लहसुन दिखईबा प्याज दिखईबा।

दोठो आदमी बैठे हुए एक पूरक पे हैं --

थोड़ी घास-फुस दिखाई दे रहा होगा दूर एक पेड़ दिखाई दे रहा होगा ऊपर आसमान दिखाई दे रहा --